यहां पे ईंटों की बनी बाउंड्री दिखाई दे रही है जो लाल और पीले रंग की है।

यहां पे लोहे की जाल सी बनी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक लोहे का बना कद्दू जैसा कुछ रखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कुछ मिट्टी पड़ी है। आसपास बोहोत सारी घास है और पेड़ पौधे हैं।